ऐसा लग रहा है उद्घाटन अभी का हुआ है जो की अभी कस्टमर कोई नहीं है जो इसमें सर्विस करने वाले है।

ये पूरा गमला में फूल-उल लगाया गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में गमला में फूल।

इसमें जेंट्स वेंट्स भी है लोग जो की बहुत अच्छा लग रहा है देख --

मैगी भी है जो की की खाने में बहुत टेस्टी लगता है बच्चों सब को।